आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर बोहोत से फैमिली वाले और टूरिस्ट इस मोसम का आनंद लेने आए हैं।

दोनों मीडीअम पढ़ाए जाते हैं आप सब भी यहाँ पर अपना एडमिशन करवा सकते है केन्द्रीय विद्यालय एटा में आए और एडमिशन करवाए।

और यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह की पढ़ाई होती है --

नीला रास्ता और बहती हुई ये नहर आस पास का मौसम और ये हरे हरे पेड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं |

हैं इस मदरसे में आज एक जलसा है। इस जलसे में हज़ार लोग से भी ऊपर लोग शामिल होने वाले हैं।